येलो कलर का टी-शर्ट और ब्लू नीचे पहने हुए जैसे कुछ बोर्ड दिख रहे यहाँ --

यहाँ पे कुछ बिल्डिंग दिख रही है और ऊपर वो पर्दा लगा हुआ है।

कुछ बांग्ला में लिखा हुआ है और जिनो भी पहुंचने के लिए सामने में दो लोग दिख रहे हैं जो --

और एक पूछने वाला रखा है तो वो है और एक चेयर बीच में रखा हुआ है --

यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है ग्रीन कलर का इसमें निजाम होमियो स्टोन क्लीनिक लिखा हुआ है डाक्टर मो --

इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और नीचे भी लिखा है होमिओ --

यहां पे कुछ डब्बा जैसा दिख रहा है।

यहाँ पे एक घर दिख रहा है | घर में कुछ विंडो दिख रही है ।

यहां पी सड़क दिख रहा है।

और पीले पीले कलर का दिख रहा यहां से।

यहाँ बहुत सारा अजीब सा बेसमेंट दिख रही है।

यहाँ पे गाय दिख रही है।

उम्म घर दिख रहा है कुछ कुछ बिल्डिंग भी दिख रही है यहाँ पे सभी खड़ा है।

ऐसा क्या है वाइट कलर का पे --

और एक आदमी दिख रहे हैं रेल विभाग --

कुछ लिखा हुआ है जिसकी पीछे में दिख रही है गोल-गोल दिख रही है --

यहाँ पे एक बस दिख रही है बहोत बड़ी और यहाँ पे ब

यहाँ पे कोई कार्यालय दिख रहा है और यहाँ पे दो गेट दिख रहा है | एक गेट बंद है एक खुला हुआ है ।

ये पीला पेंटिंग किया हुआ है तीन बाइक बाहर में खड़ी --

और एक दिख रहा है दिख रहा है यहाँ ये --

लेडीज दिख रही है ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी हुई है सामने में और यहाँ पे --

जल के अंदर एक बहुत बड़ा मेड है दिखने में।

यहां पे एक आदमी है।

इसके पीछे में एक मंदिर दिखाई दे रहा है उगा हुआ है।

और यहां पे एक बहोत बड़ा सांप दिख रहा है।